और यहां बहोत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुएं हैं।

ऑफ व्हाईट और बाउंड्री उसके व्हाईट हैं।

यह एक स्कूल है जहां पर--

वहां पर बहोत अधिक मात्रा मे पेड़-पौधे लगे हुए है। वहां आस पास बहोत ही म--

यहां पर बहुत अधिक मात्रा में घोड़े हैं।

यहां जो कि जिम बहुत बड़ी है।

बहुत बड़ी बड़ी लाइटिंग लगी है। कुछ लाइटें व्हाइट ओर गोल्डन भी है।

और वहां बहुत अधिक मात्रा में चेयर है और--

यह एक बहोत ही बड़ा पैलेस है।

जहां पर बहोत ही अधिक मात्रा में घास उगा हुआ है।

सफेद भी हैं और यहां एक माली लगा हुआ है जो पेड़--

यह एक बहोत ही बड़ी दुकान है।

खेलते हैं योगा करते है इसके बीच में एक गोल कलर का--

गोलाकार में एक ट्यूब बनी हुई है जिसके आर पार लोग चक्कर लगाते यहां--